इस फोटो में जो हमको एक सुखदेव पैलेस दिखाई दे रहे--

उसके बाजू कार्टून में भी सामान दिखाई दे रहा हैं।

ऐ कार वास में एक कार है जिसका पूरा आगे पीछे खोल के है।

सूरज निकल के दिखाई दे रहे हैं।

ये फोटो में जैसा दिखाई दे रहे हैं।

ये फोटो में जो हमको एक बैटरी गाड़ी दिखाई दे रहे हैं ये जो नया है और ये जो लाल कलर का है।

ये फोटो में हमको एक रोड दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में जो हमको कृष्णा एम_एम ढाबा दिखाई दे रहा है।

सामने में एक डस्टबिन है जो की रखा हुआ है।

ये फोटो में जो हमको बड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है।

और वो जो टोपी जैकेट और ब्ल्यू कलर का पेंट पहन के है।

और सोफा सब पे है।

यहां में छोटा छोटा पत्थर और बड़ा बड़ा पत्थर सब है।

यहां मे आगे में बहुत सारा इंसान लोग है।

और पीछे में जो बहुत ज्यादा सफेद कलर का चेयर रख के हैं।

नीचे में सर्विस और अलग साइड में कार डिलेवरी एरिया ।

ऐ जो ब्रिज है उसका बीच में और साइड साइड में वाइट कलर का कुछ लगा के हैं और यह ब्रिज में एक स्कूटी जा रहा--

और उसका सामने ही एक आदमी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में जो हमको ऑफिस जैसा दिखाई दे रहा है।

उसका नंबर प्लेट नहीं लगाया हैं अभी तक।

और वो जो बहुत बड़ा पत्थर का सामने में है।

इस फोटो में जो हमको जो एक सफेद कलर का मशीन दिखाई दे रहे हैं।

वो यहां में जो में थे उसका कलर जो जुगनू कलर है।

यह फोटो में जो हमको यह रास्ता दिखाई दे रहा है।